ये जेन्ट्स सलून है और यहाँ पर कुछ कुर्सिया वगेरा भी रखी हुई है।

ये सामने हमें एक सड़क दिखाई दे रहा है जिसके आइड-साइड पे पेड़ लगे हुए है ।

और हमें सामने ही कुछ पटरियाँ भी दिख रहीं हैं और इसके जस्ट सामने से ही ट्रेन आ रही है स्टेशन पर --